अच्छा सब क्रिकेट ग्राउंड दिख रहा है खेलने वाले और सारा प्लेयर दिख रहा है इसमें और ऊपर में घने बादल दिख रहे हैं और अच्छे से बैठने वाला दिख रहा है बगल-बगल साइड में।

यहाँ एक टावर भी लगा हुआ है और ये अच्छे से ऊपर मे बादल पूरा छाया हुआ है और ये ये और बिजली के तार भी नजर आ रहा है ये काफी अच्छे देखने मे लग रहे हैं।

लग रहा है शादी का फंक्शन वगैरा हो रहा है एजा काफी बॉय लोग खड़ा है एजा फोटो क्लिक करवा रहें हैं और ये काफी अच्छे सुन्दर नजर आ रहें हैं एक मंदिर भी जैसा भी लग रहा है हमको।

ये एक अमरूद हैऔर ये पीछे वगैरा लगा हुआ है जो हरे कलर का है जो हाथ में फोटो क्लिक करवा रहा है अमरूद को लेकर।

ये हमको लग रहा है घूमने का जगह लग रहा है। अच्छे लग रहे देखने में बादल भी अच्छे लग रहे। घूमने का जगह लग रहा है। होटल जैसा लग रहा और ये --

एक बस स्टैंड लग रहा है जिन बस स्टैंड बस स्टैंड लग रहा है हमको ऑटो वगेरा भी गया हुआ है काफी अच्छा से --

ये कुछ न कुछ फ़ोटो वगैरह लग रहा है। कुछ न कुछ बच्चे वगैरह प्रोजेक्ट में बनाने दिया है। ये लग रहा है काफी अच्छा से --